एक ने ब्लू कलर का पेहना है और एक ने शर्ट पेहनी है चेक वाली।

और बिल्डिंग बहोत लंबी है रेड व्हाइट और ब्लू कलर की बिल्डिंग है।

और एक डस्टबिन है पर्दो का कलर जो है वो है।

पूरा शोरूम जो है वो वाइट और पिस्टल कलर का है एक पौधा भी लगा हुआ है।

और दीवार व्हाइट एंड ग्रीन कलर में--

सामने एक बेकरी दिख रही है उसका नाम है बेकर्स शॉपी ।

उसके साइड में एक श्री बालाजी वेजिटेबल भंडार भी नजर आ रहा है।

लड़कियां कुछ लड़के जो हैं खड़े हुए हैं मूर्ति के आस पास।

सामने काफी सारे गुब्बारे लगे हुए हैं रिशेप रिसेप्शन का ये फोटो है एक लड़का है।

सामने से ती तीन चीजे है दो कोट हैं सॉरी एक कोट है दो जो है वो शेरवानी है कोट का कलर समझ नहीं आ रहा है।

और इसके अलावा इस फोटो में और कुछ नहीं दिखाया है सिर्फ एक टेबल है टेबल के ऊपर एक प्लेट है प्लेट के ऊपर --

दो नंबर दे रखे हैं जिसमें जो फर्स्ट नंबर है नाइन थ्री वन जीरो टू नाइन सिक्स फोर जीरो टू ।

इसमें बनता है दाल फ्राई कड़ाई पनीर शाही पनीर आलू पराठा--

स्टेशन का फोटो है यह पटरिया नजर आ रही है और--

एक बाइक खड़ी है बहोत दूर जो है एक लड़का जा रहा है जिसने वाइट कलर जो है शर्ट पहनी हुई है।

जो काउंटर पे हैं एक लड़का बैठा हुवा हैं।

इस फोटो में एक लड़का है जो अह रेड कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहन के जा रहा है।